एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है। सामने एक डस्टबिन दिख रहा है।

और फूलो की माला लगी हुईं हैं।

एक से लेके खड़े हैं और पीछे एक दुकान है और इसपे सैनिक का बोर्ड लगा है।